यखमा जी कुछ लेटन जगीं और एक कक्खि पार्क की जगह जख बच्चों को खेलन कु होन्दु उख सामान होन्दु और यख बड़ी हरी भरी घास भी नी च।

होटला बण्युं और वे पर भोत सारी लैटन बलीं और वख भोत सारा दरवाजान अर खिड़किन अर वे पर भोत सारा डिज़ाइन भिन बण्यां।

भोत सारा मरचु का कट्टन रख्यां कुछ भी रख्यां अर सामणी पतेलु भी सामनी गोब्बीन भीं रखीं अर कट्टों बोरियों पर मर्चन रखीं।

अर कुछ गोब्बी भीन रखीन यकदी सामनि क्रैट भी रखीं कुछ लोग भीन सामणी खड़ा होंया अर एंच बिटिन कुछ आसमान कू उजालु भी पण सूरज कू।